ये कुर्सियां भी रखी हुई हैं पंखे भी लगे हुए हैं यहां--

और यहां पे कुर्सी रखी हुई है मेज रखी हुई है।

पेयरस लिखा हुआ है लाइट भी लगी हुई है।